ये एक लाइब्रेरी है यह बोहोत ही बड़ी लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी में बोहोत सारी किताबे रखी हुई हैं।

यहाँ पर पेंसिल रबर पे- पेन पेन्सिल सभी चीजें मिलती है। और बाकी बैलून बैग इसकी आदि सभी चीजें मिलती है यहाँ पर।

यहाँ पहिले से बहोत ही अच्छा है।

यहाँ बहोत ही बड़ी दुकान है। यहाँ पे एक व्यक्ति दुकान में बैठा हुवा है। काजू खजूर की बोतल रखी हुवी है।

यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो इस क़ुराई का नाप ले रहा है। वह व्यक्ति --

यहाँ पर रावण धवन दहन किया जा रहा है।

रामजी रावण का दहन कर रहे है।

यहाँ और उसके बगल में एक आम का पेड़ और एक नीम का पेड़ भी लगाया हुआ है यहाँ पर।

यहाँ एक फू- फुवारा है। यहाँ पर ऊँचे प्रवाह से पानी झील- झील है। यहाँ पर बहोत ऊँचे-ऊँचे से पानी गिरता है।

यहाँ पर बहोत ही बेची हुई चीजें मिलती हैं। यहाँ पर छोटे-छोटे गमले --

यहाँ पर एक पोखरा है। यहाँ पर उसका पानी बहुत ही साफ और सुथरा है। यहाँ बहोत ही हरियाली है और एक पहाड़ भी है।

बहोत बड़ी दुकान है इसका नाम लालचंद है।

बहोत ही अच्छी है। यहाँ पर पानी में यहाँ पर बीच में पानी लगाया गया --

और हरी सभी चीजे मिलती हैं यहाँ पे चिली चिकन चिली पकोड़ा चिकन पकोड़ा वेज पकोड़ा सभी चीजे यहाँ पर उपलब्ध हैं।

अअअ सफ़ेद रंग का गेट और गेट बहुत ही बड़ा और --